यहाँ एक बैंक दिखाया गया है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिस बोर्ड पे बैंक का नाम लिखा है सामने एक और बोर्ड लगा हुआ है जो की एंट्री गेट है इस बैंक का।

एक आदमी बैठा हुआ हैं जो की चश्मा लगाया हुआ हैं गले में लॉकेट पहना हुआ हैं इसने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई हैं।